उन्होने इस कार्य पानी स्वच्छ लिया जाता है। और यह कोई कोई रासायनिक या वैज्ञानिक कार्य किया जा रहा है।